सामने एक बहोत बड़ी बस दिखाई दे रही है बस का कलर सफेद है और बस का गेट के खुला हुआ है।

बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे है ये ठंड का मौसम का दृश्य है।

टेबल भी लगाया गया टेबल पे बहुत सारे शीशे के गिलास रखे गए हैं।

एक प्लाईवुड और शीशा से बना हुआ बक्सा दिखाई दे रहा है।

आसपास बहोत बड़े बड़े बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे हैं ये एक ऊपर से खींचा हुआ दृश्य है।

सामने बगल में एक स्कूटी लगा हुआ है जो कि ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पे अंदर में एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यहां पे लिखा भी है वैल्यू प्लस वराइटी ।

सामने बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं।

ये भी किसी बिल्डिंग पर से फोटो घीचा गया है।

बिल्डिंग सफेद कलर और गुलाबी कलर से पेंट किया गया है यहां पे शीशे का बिल्डिंग में लगाया गया है।

ये स्कूल दुतल्ला है और ऊपर में भी बन रहा है।

साइकिल भी दिखाई दे रही है कुर्सी भी लगाया गया है।

ये एक रेस्टोरेंट या होटल का अंदर का दृस्य है।

यहां पे बहुत सारे टेबुल और कुर्सी लगाए गए हैं।

पुल में सिर्फ यहां पे साफ दिख रहे हैं यहां पे बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे आस पा--

एक तरफ दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जोकि जा रहे हैं दोनों कपड़े ब्लैक कलर के पहने हुए हैं।

यहां पे दो तीन कुर्सी दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के।

यहां पे शीशे का दरवाजा लगाया गया है नीचे पिला कलर का पेंट किया गया दरवाजा में --

ये एक शाम का दृश्य है यहां पे कहीं सिटी का दृश्य लग रहा है।

सीढ़ी के बगल में एक ब्लू कलर का बाल्टी दिखाई दे रहा है।

हॉल के अंदर में एक टी_वी भी चल रहा है जो कि बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है।

सामने हरा भरा सा कुछ पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है जोकि उसमें लाइट लगाए गए हैं तथा झालर लगाए गए हैं नीचे में घर दिखाई दे रहे हैं।

पीछे एक लड़का साइकिल से आ रहा है जो की लाल टी शर्ट पहना हुआ है और ये एक मेन रोड पर का दृश्य है।

वहाँ पे बहुत सारी बाइक लगी हुई है।

अंदर में बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं और इसको सफेद कलर से पेंट किया गया है।

यहां पे डिजाइन का हाथा दिया गया है हाथे के अंदर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं बगल में एक खजूर का पेड़ है।

यहां पे बहुत सारे मछली दिखाई दे रहे हैं नीचे पर भी और ऊपर में भी मछली दिखाई दे रहे हैं।

सामने में एक नदी सा छोटा सा पानी बह रहा--

ये शादी या पार्टी का डेकोरेशन समय का चित्र--